अअन अलग अच्छी मिर्चो को अलग करते हुए दिखाया जा रहा है।

सामने अ एक आदमी दिखाई दे रहा है जो कि अऽ जिम में है ये कसरत करते हुए अपना पोज दे रहे हैं इनके पीछे ट्रेनर लोग भी दिखाई दे रहे हैं और काफी सारी --

यह सामने हमें एक मंच दिखाई दे रहा है जहां साज-सज्जा का काम चल रहा है अऽ और साज-सज्जा करते हुए भी लोग दिखाई दे रहे हैं।

ये हम एक लॉन्ड्री की सर्विस दिखाई दे रही है यहां बहुत तरह की सर्विस का काम किया जा जाता है यहां कपड़े धोने का भी काम किया जाता है और यह अममअअअ इसमें--

अअअअमम कुछ सामान भी दिखाई दे रहे हैं इस पुल पर से यात्री लोग का आवागमन होता है।

इसके बगल में एक छोटा सा खपड़ा का अअम घर बना हुआ है और यह काफी छोटा दिखाई दे रहा है ।

इसमें एक अअ छोटी सी नाव भी दिखाई दे रही है और एक बड़ी नाव दिखाई दे रही है जिसमें की दो तल्ले बने हुए हैं।

तरबूज आम नारंगी शनतरा सेब भी है।

अमम जेंट्स लोग भी है जो खाना बनाते हुए दिखाई दे रहे --